और उधर बिल्डिंग है जो ईटा का दिख रहा--

भी बैलून से सजा हुआ है।

बहुत ही सारा सामान है।

यहां पर एक होंडा शोरूम है।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

सामने सूखा हुआ फूल है आम का पत्ता लगा हुआ है।

यहां पर लग रहा है काम करने वाला मंच है।

के नीचे लग रहा है कि बिल्डिंग है।

पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी है।

और इधर एक डब्बा भी है।

बहोत ही बड़ा दिख रहा है।

यहां पर दो लेडिस आ रही है जो पैदल है।

यहां पर एक साइकिल वाला है यहां पे बिजली का खंभा लगा हुआ है।

और एक सीढ़ी लगा हुआ है यहां फोन पे भी का उपलब्ध दिखा रहा है।

दो लोग खड़े हैं और एक नाव पे खड़ा है।

आदमी कुछ रुके हुए हैं को कोई कोई दौड़ रहे--

यहां पर बड्डे पार्टी मन रहा है बहुत सारे गेस्ट आए हुए है।

यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है उसके पीछे एक बैग है।

और बहुत ही बड़ा शहर लग रहा है जो आधा जंगल दिख रहा है।

यहां पर लग रहा है दो दुकान हैं।

और यहां पर बाइक बाइक का भी फोटो लगा हुआ है।